पीछे सूर्य अस्त होता दिखाई दे रहा है।

काफी लोग और बच्चे बैठे हुए हैं।

और साथ में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।